गाड़ी लगा हुआ है दूसरी तरफ गिट्टी है चारो तरफ से पेड़ पौधे ऊपर खुले आसमान हैं ।

एक कुर्सी है एक टेबल है कुछ गिरा हुआ है एक--

यह एक हॉस्पिटल कि मैन द्वार की तरह दिख रहा है।